के बाहर दो आदमी खड़े--

इस चित्र में तीन बड़े बड़े सफेद कलर के बस दिखाए हुए है।

सब बस के खिड़की खुले हैं।

बगल में एक बाइक भी लगा हुआ है।

बाहर मे दो बैनर भी लगे हुए--

एक दीवाल पर बल्ब भी है सामने में एक वेंटीलेटर भी है।

उसके बाउंड्री लोहा के हैं जिस पर तीन चार झंडे लगे हुए हैं।

ऊपर में करकट भी दिख रहा है एक लाइट भी है।

आदमी हाफ जर्सी और हाफ पैंट पहना हुआ है।

एक पौधा भी लगा हुआ है।

बहोत सारे पूरा भूसा ये सब रखे हुए है।

यह एक झंडा तोलन के समय का दृश्य है।

उसके छत पर काला कलर का टंकी है उसके बगल में दो पाइप भी--

तीन चार मरीज भी है जिनको देखने के लिए दो नर्स --

उसके बाहर एक कार लगा हुआ है जो की सफेद कलर का है।

सामने में लिंक के सब का पेन है टेप है मारकर है।

सेलो टेप है फेविकोल है फेवी स्टिक है।

जिसके अंदर एक पंखा है एक मॉनिटर स्क्रीन है।

के ऊपर लिखा हुआ आर_पी सेवा सदन निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर।

टेबल पर सामने में स्टीकर चिपकाए--

मनताशा मोटर्स के अंदर बहुत सारा हाइव भी है।

यह एक जिम के कमरे का दृश्य है जिसमें बहुत सारे ट्रेडमिल ये सब रखे हुए हैं।

दो हीटर है दो पंखा है एक वाटर फिल्टर है एक आ_रो है।

ऊपर सीलिंग में एक बल्ब भी है जो कि जल नहीं रहा है।

सामने में एक गेट है।

स्टेज पर एक सोफा भी रखा हुआ है।

और एक कैमरा भी लगा हुआ है।

कुछ आदमी हरे कलर के मैट पर बैठे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे हरे भरे पेड़ घास ये सब जमे हुए हैं।

दोनों साइड चिपकने वाला टेप है एक काला कलर का कुर्सी भी है।

बगल में दो फायर एसटिंग्विशर भी है।

यह एक ओकाया कंपनी का इलेक्ट्रिक शोरूम है।

इसके अंदर बहोत सारे स्कूटर लगा हुआ है।

सामने में एक ए_सी भी है।